यहां पे तीन बंदा वो करने वाला काम देख--

अ लड़की एक लड़का खड़ा है।

यहां पे बड़ा सा एक बिल्डिंग है पिंक कलर का।

दोनों ऊपर करके देख रहा है यहां पे ऊपर लटका के रखा है एक चार चक्का ब्लैक कलर का गाड़ी को--

यहां पे एक मिट्टी का अह प्लेटफार्म है जहां पे एक क्रेन --

बैग में भी सजाके रखा हुआ है।

दिखाई दे रहा है यहाँ पे तीन छतरी दिखाई दे रहा है एक ग्रीन एक ब्लू एक येलो कलर का --

एक बड़ा सा समुंदर दिखाई दे रहा--

छोटा सा जहाज दिख रहा है जो व्हाइट कलर का जहाज है जिसमें पैसेंजर अभी भरा नहीं है।

यहां पे एक नदी दिखाई दे रहा है।

अंदर में दो बंदा बैठ के हारमोनियम बजा रहा है ये दो बंदा के मुँह में माइक्रोफोन है।

यहां पे एक ऑफिस का अंदर का चित्र दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक बंदा चेयर में बैठा हुआ है।

दुकान में बहुत सारे बास्केट ट्रे दिखाई दे रहा हैं बास्केट ट्रे मैं बहुत सारा फ्रूट्स रखा हुआ हैं।

ये स्कूल का क्लासरूम है जहां पे बेंच और टेबल रखा हुआ है।

काफी वो लोग नील कलर करके टी_शर्ट का यूनिफॉर्म पहेन खड़ा--

बोलते है तभी एक आदमी ऊपर में चढ़के काम कर रहा है।

इसका ऊपर में फालसीलिंग करा हुआ है।

जहां पे ये कार वॉश सेन्या हैं।

एक स्कॉर्पियो गाड़ी वाइट कलर का ऊपर में लटका के लटका के रखा हुआ है।